जिसके अंदर बहोत ही अच्छे एवं बहुत ही --

राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल यहां पे कुछ बच्चे नाटक का कार्यक्रम करते हुए --

जमा हुआ किये गए राशि को यहाँ जाके आप जमा कर सकते है जो आप के भविष्य के पूंजी के लिए काम में आएगी।

आदमी कुछ बेथ कर रहे है। यहाँ पे चार आदमी बेठे हुवे है। तथा एक आदमी बोर्ड पर कुछ दिखा रहे है। यहाँ पे एक टेबल भी है। टेबल के उपर बहुत सारी किताबी भी रखी हुई है।

यहाँ पे एक कुर्सी रखा हुआ है तथा एक घड़ी भी देखने को मिल रहा है।

फल का भी दुकान है यहाँ पे एक राशन का दुकान है जिसमें सारी --